रस्ते में बाइक और गाड़ी भी खड़ा है।

ढेर सारा फोटोग्राफ चिपका के दीवार मे।

इसमें महिलाएं योगा कर रही है।

और लाइट्स भी लगाया गया है।

और सामान की वेट नापने वाली मशीन भी दिख रहा है।

यह फोटो में एक घर दिख रहा है।

और लिखा गया है अचीवर्स गर्ल्स हॉस्टल ।

और एक लड़की चल रही है।

यह फोटो में एक बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है।

इसमें बहुत सारे टेबल और चेयर भी रखा है।

उसके ऊपर एक टी_वी भी है।

यह फोटो में एक रूम दीख रहा है।

फोटो में एक प्ले ग्राउंड दिख रहा है।

बोर्ड्स क सामने एक सूखा पेड़ भी है।

और पीछे बहुत सारी गाड़ी भी पार्क कई गई है।

जिसमें बैठने के लिए चेयर और टेबल भी रखा गया--

कई व्यक्ति काम कर रहे हैं।

ये यह फोटो में एक रूम दिख रहा है।

इसके पत्ते छोटे छोटे हैं।